प्रिंटेड सलवार सूट लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर मुझे एक फैक्ट्री दिखाई--

पर मुझे अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं।

आदमी मुझे फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा है।

सामने मुझे एक बोट नजर आ रहा है।

इस फोटो पर मुझे एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है।

मुझे एक अलमीरा रखी दिखाई दे रही है।

महिला ने पीले रंग की साड़ी पेहनी हुई दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग पर मुझे सफेद और नीले रंग से पुती हुई--

मुझे इस फोटो पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने मुझे कुछ लोग दिखाई--

मुझे इस फोटो पर एक दुकान दिखाई दे रही है।

फोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा है।